सफेद रंग का एक टेबल लगा हुआ हैं।

एक वाटर पार्क की फोटो है।

यहां ए_सी लगा हुआ है।